इस इमेज में एक तालाब दिखाई दे रहा है पास में ही दो आदमी खड़े हैं।

इस इमेज में तीन चार शॉप्स दिखाई दे रही है एक बीच में शॉप है जिसके ऊपर लिखा है आदर्श इंजीनियरिंग वर्क --

इस इसके बाहर एक स्कूटी खड़ी है जोकि सफेद कलर की है।

सामने एक टेंट लगा हुआ है जिसमें एक आदमी सुखमणि साहिब का पाठ कर रहा है।

शॉप के बाहर उसका नाम लिखा हुआ है फैशन हब --

और इसमें कुछ पौधे बड़े हैं जिसमें से कुछ पत--

इसमें हॉस्पिटल में लाइट्स जग रही है।

यह इमेज एक शॉप की है इस शॉप में बहुत सारा सामान पड़ा है।

इसकी इमेज इसके शीशे में नजर आ रही है।

इस पिक्चर में एक भैंस दिखाई दे रही है भैंस का रंग काला है।

सामने एक कार दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

इसके अंदर एक गेट लगा हुआ हैं छोटा है गेट ।

की दीवारें सफेद कलर की हैं और पास में एक--

इस छत के कॉर्नर्स पर छोटे छोटे मंदिर के पिलर्स बने हैं।

इसके अंदर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इन गमलों को बहोत ही अच्छे से रखा हुआ है।

और सबसे नीचे वाली कबर्ड मे कुछ बोतले है जिसके अंदर--

इनके पास हवन का सामान पड़ा है।

ये सामान को कुछ अलमारियों में रखा हुआ है।

पास ही एक और शॉप नजर आ रही है।

और कुछ और सब्जियां भी नजर आ रही हैं।

मे अलमारी हल्की हरे और गुलाबी रंग की बनी है।

साथ में हरी भरी पत्तियां नजर आ रही हैं।

मूर्तियों पर फूल चढ़ाए हुए हैं।

इनको फूलों से सजाया हुआ है।

इस इमेज में एक छत दिखाई दे रही है।

सामने एक और घर दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज में एक रोड दिखाई दे रही है।

एक साइड एक और बोर्ड लगा है जिसपर सी_बी लिखा हुआ है चिल्ली ब्रिज लिखा हुआ है।